एैनचा हमथे एक लैट करल दिखेण लगी सामणे हमथे काच की सिसा न दिखेण लग्या खिड़की खुलीन दोरवाजा खुलयान।

फोटो मा जी हम ते एक कपड़ो की दुकान दिखाईं गईं जै मा जी अलग अलग खानों मा अलग आग कपड़ा रख्यां जन एक खाना मा हम ते साड़ी दिखेण लगीं लाल पीली नीली दूसरा खाना मा हम ते सूटन दिखेण लग्यां जु काला सफ़ेद लाल।

ईं फोटो मा जी हम त बड़ू स्विमिंग पूल दिखेणु लग्युं जै मा जी नहेदान ओर पोर हम त ये का पीला रंग की रेलिंग दिखेण लगीं दुई चार खम्बा दिखेण लग्यां जूं बिटि यथे वथे जायां।